सामने एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ।

इसके अलावा कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं एक अह मवेशी दिखाई दे रहा है।

इसके अलावा टैक्सी के पीछे एक टैक्सी खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में दो शेर दिखाई दे रहे हैं।

हरे कलर का येलो कलर का केबिन बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बाहर एक चप्पल रखी हुई दिखाई दे रही है जालियों से कवर किया गया है।

कुछ लोगों ने व्हाइट शर्ट पहन रखे हैं कुछ व्हाइट बनियान पहन रखे हैं।

दिखाई दे रही है इसके अलावा जो है कि अ सेन्ट्रल ए_सी दिखाई दे रहा है।

इसके अलावा कुछ नमकीन के बैनर ऊपर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गार्डन में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। दो पेड़ आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और किंडर जॉय रखे हुए दिखाई दे रहे हैं कोको कोला का एक फ्रिज रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बाड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अन्दर दो गधे दिखाई दे रहे है।

एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जहां से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है झारने की तरह--

इसके अलावा गुफा जैसा बना हुआ है वह ये पूरा पहाड़ी--

इसके अलावा कुछ घर नजर आ रहा हैं आसपास में।

दीवार के ऊपर एक वॉलपेपर दिखाइ दे रहा है वॉलपेपर के ऊपर--

इसके अलावा एक डबल सीटर सोफा रखा गया है।

जिनके प्रोवाइडर संजय संजय चंद्रवंशी जी--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

इसके अलावा कुछ फ्रिज रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक कैफे दिखाई दे रहा है जिसका नाम है के_टेन ।

इसके बाहर में बहोत सारे सामने में बिल्डिंग बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक ब्लू टी_शर्ट में एक भैया दिखाई दे रहे हैं जो कि हाथ पे कलावा बांध रखे हैं।

एक वेटिंग पैसेंजर की वेटिंग करने का एरिया बनाया हुआ दिखाई दे रहा है जो की टिन शेड से कवर किया गया है।

और यहां पर कुछ अभी प्रोग्राम चल रहा है आसपास में और भी बहुत सारी मल्टीये दिखाई दे रही हैं।

जहां पर बहोत सारे कमोड जमे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक मेडिकल शॉप दिखाई दे रहा है।

ये एक कॉल सेंटर का फोटो दिखाई दे रहा है।

जिसको लोहे से बनाया गया है पुल को।

बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही है।